छोटे छोटे पौधे लगे हुएं हैं साइड मे बड़ा पेड़ भी है।

कुछ व्यक्ति उस पे भी बैठे हुए हैं।

और दो व्यक्ति लगा रहे हैं एक छत के ऊपर खड़े हैं एक छत के नीचे खड़े हैं लोहे पे।

और मिरर भी लगा हुआ है हर तरह का क्रीम वगेरा भी दिख रहा है और ये व्यक्ति खड़े हैं।

ब्लैक चेयर भी है और डब्बा में मोबिल रखा हुआ है।

हाथ में गन भी लिए हुवे हैं एक स्कार्पियो अंदर की साइड गई है उसमें से भी कुछ आदमी निकल रहे हैं।

यहां पे शुभ लाभ का भी बना हुआ है रेड कलर से लिखा हुआ है।

ग्रीन कलर के पत्ते हैं और गोल आकार पिंक कलर के हैं।

यहां पे बाइक खड़ी है स्कूटी भी खड़ी है एक और रेड कलर की बाइक खड़ी है।

और टेबल भी रखा हुआ है चेयर भी है।

और यहा पे कुछ मैकेनिक काम भी कर रहे हैं।

इसमें एक व्यक्ति जाते हुए नजर आ रहे हैं।

दो औरतें भी नजर आ रही है एक ग्रीन साड़ी में खड़ी हैं एक ब्लू साड़ी में बैठी हैं।

यहां पे बहुत सारे बच्चे बाहर फील्ड में पढ़ रहे हैं।

यहां पे रंगला पंजाब का बैनर्स लगा हुआ है।

यह एक रेस्टोरेंट का दृश्य है यहां पे कुछ लड़कियां बैठ कर टेबल पर खा रही है।

यहां पे बहुत ही खूबसूरत सा सुखदेव प्लेस बना हुआ है मैरिज हॉल।

यह एक घर का दृश्य है।

यहां पर मस्जिद जैसा मीनार दिख रहे हैं।

और नीचे में भी घर बनाया हुआ है एक व्यक्ति खड़े हुए हैं।

और टाइल्स भी लगा हुआ है।

बच्चे लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं नीचे में टाइल्स लगा हुआ है।

और मिरर भी लगा हुआ है बड़ा सा फोटो भी लगा हुआ है।

और सोट के साइड में बालू गिरा हुआ है।

और रेलिंग भी बना हुआ है जैसे की छत के ऊपर है ये शॉप।